और कुछ मनके भी दिखाई दे रहे--

और भी कुछ मन के बैठे और खड़े हुए हैं।

कुछ मंदिर बना हुआ है और--

यहां पर मोबाइल की दुकान रखी हुई है।

कुछ फूल सजे दिखाई दे रहे हैं।

और भी खुर्सी दिखाई दे रही है।

और कुछ मनके भी खड़े हुए हैं और घर भी बना हुआ है।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ खंबे भी दिखाई दे रहे हैं।

में कुछ दवाईएं रखी हुई हैं।

और कुछ नाव भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ पौधे भी और कार --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

और भी टेबलें भी रखी हुई हैं।

घर भी बना है और हॉल भी बड़ा है।

कुछ यहाँ पर कुर्सी भी रखी हुई हैं।